यह एक स्विमिंग पूल है अ उस पर--

और बगल में एक बहोत बड़ा पेड़ है और पेड़ के इस किनारे लोहे का ग्रिल है।

उस पर उतरने के लिए पत्थर लगा हुआ है।

उस पर हरे कलर की कुर्सियां रखी हुई है कुछ खाने के लिए टेबल रखी हुई है।

सामने एक मूर्ति दिखाई दे रही है मूर्ति के अगल बगल पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

और साइड में एक दीवाल है।

यहां कार दिख रही है उसको दो लोग--

नंदी जी बहुत प्यारे लग रहे हैं उनको सजाया गया है शंकर जी को भी सजाया गया है।

कुछ बच्चे अपने माता पिता के साथ हैं।

एक आदमी बैठा हुआ है जो लाल कलर का शर्ट पहना हुआ है और सफेद कलर का पेंट पहना हुआ है।

आ सब तरफ उजाला ही उजाला है लकड़ी के दरवाजे लकड़ी के टेबल --

और सामान रखने वाला रिक्शा दिखाई दे रहा है।

यह एक पहाड़ सा दिखाई दे रहा है।

ज्वेलरी शॉप में ये बहुत से लोग दिखाई दे रहे हैं।

यह राशन का दुकान है जिसमें राशन के पुरे सामान--

साइड साइड दिखाई दे रहा है लाइट का बोर्ड दिखाई दे रहा --

और कुछ लोग बैठे हुए हैं।

यह एक डिश है जिसको ब्लैक कलर के ट्रे में सजाया गया है।

छोटे छोटी मूर्तियां रखी गई है जिसमें सब प्रकार के भगवान दिखाई दे रहे हैं।

झरने के बीच-बीच भी छोटे-छोटे पेड़ दिखाई दे रहे है।